देख सकते हो की जिम है जिम आप में जो है काफी मशीने रखी हुई है एक पीछे कमरा बना है जिसमें आपको दो आदमी जाते हुए खड़े दिखाई दे रहें है ऊपर आप देख सकते हो काफी आपको इसमें येलो कलर का दिखाई दे रहा है काफी--

नही आप देखिए की केबिन बना हुआ है केबिन में जैसे आपको एक लड़का बैठा हुआ दिखाए दे रहा है और इसके अलावा भी आप इसको कुछ और भी देख सकते हो जैसे की यह एक हॉस्पिटल का सीन हो सकता हैं।

इसमे अभी देख सकते है उसमे दो जवानो की फोटो देख सकते है एक बंधूक को हाथमे लिया हुआ है।

और की और देख सकते हो काफी चीज़ें इसमें दिखाए गयी है रेड और ये सब चीज़ें दिखाए गयी है काफी सूंदर है जो के देख सकते हो काफी अम्म गजब का लग रहा हैं। इस --